टंगे हुए है जोकि हेंगर में सारे कपड़े टंगे हुए है ।

आ बैनर में देखिये कुछ चित्र बने हुए है और जोकि इसमें देखिये छोटे-छोटे डिब्बे के चित्र बने हुए है लम्बे और-- .

और ये जो दीवारे का रंग है वो पीला है और बीच - बीच में मेहरून रंग की पट्टी की गई है और यहाँ पर देखिये अगल - बगल भी बहुत सारे छोटे - छोटे घास है छोटे - छोटे पेड़ है।

और यहाँ पर देखिये जो दरवाजा है वो लकड़ी का बनाया गया है और अंदर देखिये सी सी कैमरे भी लगे हुए है और ऊपर देखिये यहाँ पर जाली जैसा कुछ लकड़ी से बनाया गया है डिजाईन --

यहाँ पर कुछ लड़के लडकियाँ सफ़ेद रंग का कुर्ता जामा पहने हुए है और इन्होने अपने हाथ में ड्रम लिया हुआ है।